नॉर्मल से कपड़े में जिससे नहा सके।

इसलिए इसे नजारा हरा भरा लाइटिंग दिख रहा है शाम का टाइम है शायद।